इस फोटो में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है गेट पे दो आदमी बैठे हुए हैं।

टी-शर्ट पेहन रखी है और नीले रंग का जीन्स पेहन रखा है सफेद रंग का जूता पेहन रखा है और यहाँ --

इस फोटो में बोहोत सारे आदमी और औरत दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

यह एक खिलौने की दुकान है इस दुकान में बोहोत सारे बैट और बैडमिंटन --

जो की काम कर रहे हैं घर बना रहे हैं और ये घर --

बैंक के बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है गाड़ी के पास दो आदमी खड़े हैं और दो बाइक भी खड़ी हैं।

टेबल पे कपड़े रखे हुए हैं। बोहोत सारे लाल रंग की कुर्सी रखी हुई है और यहाँ बोहोत सारा पेड़ भी लगा हुआ है।

हैं जो की देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और इसके ऊपर आदर्श हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेण्टर लिखा हुआ है।